इस दुकान का नाम द चेन्नई सिल्क है।

जहां पर बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने व--

सब लाल रंग में सजाया गया है।

भरे हुए जल की तस्वीर है जो छोटी छोटी धाराओं से बह कर नीचे आकर के--

गया है यह तस्वीर बारिश के मौसम की तस्वीर है।

इसका नाम एस एम इंटर महाविद्यालय है।

एक युवक जोकि अपने बाल तथा दाढ़ी को बनवा रहा है यह एक--

एक युवती पारंपरिक नृत्य को करते हुए एक कला का प्रदर्शन कर रही है।

सोफे हल्के नीले ग्रे कलर के हैं फ्लास--